खेतों में गेंहू भी उगते हैं। खेतों में चावल भी उगते हैं। खेत में सब्जियां भी उगती हैं।

बहुत बड़ा मैदान होता है मकान की।

जिसमे रोग अपने ट्रीटमेन्ट कराने के लिए यहाँ आते हैं। यूनिवर्सिटी में बोहोत सारे टीचर होते हैं जो बच्चों को पढाते हैं।

बाजार में डीसीएम भी होते हैं जो लोग सब्ज़ी खरीद खरीद कर डीसीएम में लगते हैं। बाजार में मछलीयाँ बिकते हैं।